पीछे पेड़ लगे हुए है आसमान दिख रहा है।

और वहाँ पे एक कार भी है जो कि व्हाइट कलर की है।

यह एक पेट्रोल पंप है। जहां पर लाइटिंग के खंबे लगे हुए है। खंबे का कलर ब्लू है। पेट्रोल डालने वाली मशीन दिख रहीं है।

इस पर केबल खिचीं हुई है एक रेलिंग बनी है एक बिल्डिंग है जो की येलो कलर की है बिल्डिंग में दो विंडो --